आसमान पे हल्के बादल छाए हुए हैं।

मंच पर मां दुर्गा और चार मूर्तियां सजी हुई है।

शोरूम के बाहर लाइटिंग और और सजावट की गई है।

पीछे जिम के उपरन और बड़ी शीशे की दीवार है।

बस के आगे एक आदमी खड़ा है जिसने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है।

पवन के ऊपर एक काले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

अंदर पेंट का डिब्बा और ट्रक दिखाई दे रहा है।

चारों ओर डिवाइडर लगे हुए हैं गोदाम के सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक सर्च समारोह की लग रही है।

पीछे दो मंजिला इमारत है और एक ट्रक भी दिख रहा है।

सभी कारों को गुब्बारों और रीबन से सजाया गया है।

कमरे में कुछ कुर्सियां और एक स्टैंड फैन देखा गया है।

ये एक रसोई घर है जिसमें एक आदमी खाना बना रहा है।

डिपार्मेंट ऑफ़ रेडियोलॉजि का बोर्ड लगा है।